जिसमें एक पीछे गोलाकार आकृति में लड़की का चित्र देखें फेसबुक के लाइक वाला चित्र दिया गया --

एनिमेटेन स्कूल का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है और ये गाड़ी कुछ पुरानी लग रही है।

इस फोटो में एक बच्चा दिख रहा है जिसने लाल कलर की टी शर्ट देनी है जो एक के सहारे --

और यहां पर कुछ बिनते बनी हैं जिनका कलर लाल है और कई छोटे बड़े पार्क और पेड़ भी लगाए गए हैं यहां।

जो किसी खेल को दर्शाते हैं पास में कुछ लड़कियां और महिला खड़ी है जो इस प्रतियोगिता को देखने के लिए आई हो।

यह तस्वीर किसी बड़े हॉल या मद्रा हॉल की दिखाई गई है जिसमें चार पंखे लगे हैं।

यह फोटो किसी लेडिस दुकान की-ये

यह किसी घर या स्टोर में खड़ी है जिसके पास में चारा भी रखा हुआ है।